जो ब्राउन कलर का है उसने सैंडल पहन रखी है जो बोरे को पकड़े हुए है| बोरे का कलर व्हाइट कलर का है| उस आदमी ने मास्क म पहन रखा है जो ब्लू कलर का है| यहाँ पर साइकिल है।

है जो पानी पटा रहा है| पाइप से | पाइप का कलर ब्लैक कलर का है| यहाँ पर एक पेड़ है पेड़ में पत्ते है पेड़-पत्ते का कलर ग्रीन है| यहाँ पर एक गेट है।

यहाँ पर एक मेट बिछा हूआ है जो ग्रीन कलर की है| यहाँ पर की जमीन जो है वो ब्राउन कलर की है| एक आदमी है जिसने व्हाइट रंग की टी-शर्ट और ब्लैक रंग का पेंट पहन रखा है।

महिला है जो नृत्य की मुद्रा में है| एक महिला है जो उसने ब्लू रंग का कपड़ा पहन रखा है| एक महिला है जिसने येल्लो कलर का कपड़ा पहन रखा है।

सिर्फ एक पुरुष है जो खड़ा है एक महिला है जिसने ब्लैक रंग की टी-शर्ट पहन रखी है और ब्लू रंग का जीन्स पहन रखा है।

यहाँ पर शटर है| एक महिला है जिसने ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन रखा है जिसका पीछे का भाग दिख रहा है| यहाँ पर बिल्डिंग है जो ब्लू और व्हाइट कलर में है।

ये एक बाइक है जो व्हाइट कलर की है| उसका चक्का गाड़ी से बाहर रखा हूआ है| इसमें एक व्यक्ति है जिसने रेड रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

एक आदमी है जिसने पर्पल कलर का टी-शर्ट पहन रखा है और यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी हुई है यहाँ पर कुछ किताबें नीचे रखी हुई है और कुछ स्लैब पे रखी हुई है यहाँ पर जमीन दिख रहा है ।

और हाफ पेन्ट पहना हुआ है| यहाँ पर एक व्यक्ति है जो नीचे लेटा हुआ है उसने मोबाइल पकड़ रखा है।

बस है जो पिंक कलर की है| यहाँ पर बहुत सारी महिला और पुरुष है| एक महिला ने येल्लो रंग की साड़ी पेहन रखी है| उसने अपने हाथ में एक पैकेट पकड़ रखा है।

यहाँ पे बहुत सारी तस्वीर टंगी हुई है| यहाँ पे एक तार है जो ऊपर में लगा हूआ है| यहाँ पर छत दिख रहा है जो व्हाइट कलर का है।

यह पर पर्दा लगा हूआ है जो रेड कलर का है| यहाँ पर स्टेज है| स्टेज पे दो व्यक्ति है जो आधा भाग उनका दिख रहा है।

गाड़ी है जो येल्लो कलर की है उसका टायर दिख रहा है| उस पर एक मश उस गाड़ी के ऊपर एक मशीन रखी हुई है जो ऑरेंज कलर की है| यहाँ पर एक बाइक है जो काली कलर की है उसका आधा भाग दिख रहा है।

यहाँ पर शटर है जो काली कलर की है| यहाँ पर दीवाल दिख रहा है जो व्हाइट कलर की है।

सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जा रही है| उसपे पिंक रंग का कपड़ा बिछाया हूआ है| यहाँ पर एक स्टेज है जिसका कलर ब्लू कलर का है।

दिख रही है जो सिलेटी कलर की है| यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने व्हाइट रंग की टी-शर्ट पेहन रखा है और ब्लू रंग की जिन्स पेहन रखा है| उसने अपने पैरों मे चप्पल पेहेन रखी है| उसने सर पे एक केप लगा रखा है जो ब्लू कलर का है।